ग्राउंड के बाहर एक पेड़ है और छोटे-छोटे घास है और कुछ बेंच दूसरी तरफ लगे हैं |

सफेद रंग का एलीफैंट पे दो लडके खेल रहे हैं और एक उसके उपर बैठा है |

बिल्डिंग में चार बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ हैं और तीन लोग खड़े हैं |.

रूम के फर्स पे ब्राउन कलर की टाइल्स --